इसमें डाइट एम.जेड.एम. लिखा हुआ है। सामने दरवाजा दिख रहा है। यह पूरी बिल्डिंग पीले रंग की है। छोटे-छोटे पौधों के गमले लगे हुए हैं। बहोत ही सुंदर दृश्य लग रहा है।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

ये एक डाकघर है जिसका नाम इंडियन पोस्ट है ये लाल रंग की है ये सामने सीढ़ियां बनी हुयीँ हैं।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

यह एक सफाई कर्मचारी संघ है इसका रंग नारंगी है।